यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंगे दिख रही है यहा पर कुछ दिख रही है।

--ऊपर से दिख रहा है यहाँ पे बहोत यहाँ पर बहोत आए हैं।

यहाँ पर बादल भी दिख रहे हैं यहा पर हरियाली दिख रही है कि बहुत सुंदर लग रही है।

यहाँ पर भी कुछ ऊंची-ऊंची बिल्डिंगे बनी हुई है बनी हुई है उस पर कांच टाइप का लगा हुआ है।